बगल मे पेड़ है बहोत सारे पीछे घर है।

ये एक बस है। बस पे आगे बड़ा सा शीशा है उसके आगे अंकल खड़े हैं। बस --

यहां एक लड़का बैठा हुआ हैं कुर्सी पर ।

और एक अंकल खड़े हुए हैं नीचे ऊपर आसमान है नीला --